इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा घर है।

उसका चोंच लंबा है बहुत अच्छा लग रहा दिखने में पानी कलर भी अच्छा लग रहा है दिखने में।

उधर पोस्टर मारा गया है उधर गोले गोले बनावल गया है गमले में छोटे छोटे गमले में पेड़ पौधे लगावल गया है।

पंखा चल रहा है नाम लिखा है बोर्ड पर तरफ बहुत अच्छा लग रहा है।

तार का खंभा है उधर अह हरे झंडा है ये टेंपो लगल है वहां पे आदमीन हैं।

उधर ट्रेन आ रहा है लग रहा है कि ऊपर में बहुत सारा गाड़ी ओडि चल रहा है।

कपड़ा है जींस है फुल पैंट है घड़ी है।

ये चित्र में दिखाया एक बहुत बड़ा एक वृक्ष है उधर गया है और इधर बहुत सारा पेड़ पौधा है।

इधर कचरा है कागज उगज उधर पे पहाड़ दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा--

इस चित्र में दिखाया गया कि बहुत बड़ा एक कमरा है बहुत सारा आदमी बैठे हैं टेबल पर टेबल प्लाई बनाया गया है।

ऊधर ब्लू कलर का तो है। कपड़ा है चगलाइट है पंखा है।

पिक्चर एक बोल है दूसरा आदमीन है टेबल रखा गया है यह लोहे का पाइप है।

चित्र में दिखाया कि बहुत बड़ा एक नदी है नदी के नदी में बहुत सारा आदमीन हैं नाव चला रहे हैं।

और बहुत सारा पेड़ पौधा दिख रहा है हल्का हल्का पहाड़ है बहुत अच्छा है दिखने में।

उधर बहुत सारा वृक्ष है तार वोर गया है कारिया ड्राम है।

जे टाइल्स बनल है चरक यहां फोन पे चलने वाला है तार गया है चरक पंखा है औ सी सी कैमरा है।

और बैलून टांगा गया है चरक ब्लू और एक लाइट बर रहा है पीला लाइट बर रहा है।

पूजा हुआ है रंग बिरंग का फूल चढ़ा गया है भगवान जी पर।

पोस्टर मे गाड़ी चला रहा है दिख रहा है। उधर सीसा का गेट है। उधर टी_वी चल रहा है।